और नीचे कुछ लेडिस और जेंट्स के पुतले भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक गोदाम दिखाया गया है जिसमें कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है और एक जे_सी_बी भी खड़ी हुई है।

व और कुछ हरे रंग के पाइप भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक नदी दिखाई गई है जिसमें कुछ लेडीज और ये आदमी बैठा हुआ है।

इस फोटो में एक बैंक दिखाया गया है जिसके बाहर--

बराबर में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

बराबर ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और बाहर बाइक भी खड़ी हुई है।

वीट पर एक पेंटिंग भी बनी हुई है और कुछ लाइटें भी लग रही हैं।

इस फोटो में एक रास्ता दिखाया गया है जिस पर कुछ टम्पू और कुछ गाड़ी चल रही है।

पीछे आदमी भी दिखाई दे है और पीछे एक पुल भी बना हुआ है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है जिसमें कुछ फोन रखे हुए हैं और कुछ लीड भी रखी हुई हैं।

एक आदमी भी दिखाया गया है और ऊपर कुछ लाइटें भी बल रही है।

इस फोटो में एक मंडी दिखाई गई है जिसमें कुछ हरी सब्जी और नींबू और टमाटर और बैंगन रखे हुए हैं।

नीचे एक छोटा सा बेड तखत भी रखा हुआ है।

यह अंदर एक बैंक है जिसके बाहर एक गेट है।

बराबर में एक र रंग बिरंगा पे पेडा भी है और दो टैंक भी हैं।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है जिसमें कुछ अनार और सेब और केले रखे हुए हैं और कुछ जामुन भी रखी हुई है।

इस फोटो में एक रास्ता दिखाया गया है जिसमें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और एक खंभा भी खड़ा है जिस पर कुछ लाइटें लग रही है।

और बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक मैरिज होम दिखाया गया है जिसमें कुछ उ--

बराबर में कुछ काउ काउंटर भी रखे हुए हैं और कुछ आदमी भी दिखाए गए हैं।

इस फोटो में एक पानी दिखाया गया है जी।

पर्दे भी लगे हुए हैं और कुछ कुर्सियां और सोफे रखे हुए हैं और नीचे मैट बिछे हुए हैं।